एक बडा़ सा टेबल दिख रहा है एक बडा़ सा वाइट कल का दीवाल दिख रहा है।

उसके बाद पंखा दिख रहा है और कई सारे लाइट दिख रहे हैं।

और उसके आगे में एक बडासा टॉवर दिख रहे है और सामने पे एक पानी का टंकी दिखाई दे रहे है।

तीन भाई दिख रहे हैं और एक बेट दो दोनों के हाथ पे बेट दिख रहे हैं और एक वाइट कलर का सर्कल दिखाई दे रहे हैं।

उसके आगे में कई सारे पेड़ दिख रहे हैं सामने पे भाई दिख रहे हैं।